एक ऑरेंज कलर का फिनेल एंड एक ब्लू कलर का फिनेल दिख रहा है इसमें --

ये काफी अच्छी दिख रही है और इसके अंदर बिग वगैर भी कुछ दिख रहा है।